एक भ-भैया पिंक कलर की शर्ट पहने खड़े हुएँ हैं। सामने दीवाल पे कुछ है। ग्रीन में लिखा हुआ है और यहाँ मस्जिद है। रात का समय नमाज़ अदा करी जा --

यहां पर एक मकान कि खुदाई हुई है और उसके आसपास लोहे की लातो कीं सेल्टिंग बनाई गयी है और इसके बीम पिअर बीम कलम --

सामान रखा हुआ है लाईटे जल रही हैं जीना दिया गया ऊपर जाने का।

एक गैरिज में एक कार खड़ी है जो की उसका गेट बगेरा टुटा है| सामने से भी टूटी- मूटी है।

यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत लग रहा है। ये फिरोजी कलर का पूरा दिखाई दे रहा है।

मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और बाहर की तरफ आइसक्रीम के भी ठेले होते हैं वो रखे हुए हैं।